यहाँ पे जिम करने की बहुत सारी मशीने हैं और और इनमें जिम में लाइट्स जल रहा है और एक कालिन बिछा --

ये एक पतल पहाड़ है जो कि बहुत सारे यहाँ पे पेड़-पौधे दिख रहे हैं जंगल झाड़ियां दिख रही हैं।

और पहाड़ के बगल मे एक अ लकड़ी से घिरा हुआ एक सिम्बोल है एक रास्ता है जो कि लकड़ी से घिरा हुआ है।

और जो लेडीज है उसका ऑरेंज कलर का क्लोथ पहनी हुई है कपड़े पहने हुई है और --

और व्हाइट नम ब्लैक कलर का झरना है जो कि ब्लैक कलर के पत्थर पे उ वो पानी गिर रहा है।

ये एक साइकिल शोप है जहां कि बहोत सारी बाहर मे साइकिल लगी हुई है कोई रेड कलर का कोई येल्लो कलर का।